इसमें पानी दिख रहा है।

पानी दिख रहा है। पेड़-पोधे दिख रहे हैं। मकान दिख रहे है। आसमान दिख रहा है।